cataloging पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं ubuntu linux operating system 1604 और
koha version 1605 का उपयोग कर रही हूँ
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको library science का ज्ञान भी होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
आपको koha में admin access भी होना चाहिेए
यदि नहीं तो कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
चलो शुरू करें मैं koha interface पर जाती हूँ
library staff यूजरनेम samruddhi से लॉगिन करें
याद रखें हमने उसे पहले के tutorial में cataloging rights दिया था
यह भी याद रखें हमारे पास पहले के tutorials में अपनी library में एक पुस्तक और एक serial जोड़ने का assignment था
अब हम library staff: samruddhi के रूप में koha interface में हैं
होमपेज पर cataloging पर click करें
एक नया पेज खुलता है
नए record के लिए plus new record टैब पर click करें
dropdown से मैं books चुनूंगी
चयन पहले के tutorials में बनाए गए item type पर निर्भर करता है
हालांकि आप अपने द्वारा बनाए गए item type के अनुसार चुन सकते हैं
शीर्षक add marc record के साथ नया पेज खुलता है
ध्यान दें कि इस पेज पर लाल रंग के स्टार से चिन्हित fields भरना अनिवार्य है
दिलचस्प बात यह है कि koha कुछ अनिवार्य fields के लिए values उत्पन्न करता है
0 से 9 के टैब में से हम टैब शून्य से शुरू range
000 leader field में click करें
koha default रूप से इस value को दिखाता है
मैं 001 control number field खाली छोड दूंगी
जब 003 control number identifier clicked किया जाता है koha इस value को स्वत: उत्पन्न करता है
इसके बाद 005 date and time of latest transaction field में click करें
koha मेरी machine के लिए इस value को स्वतः ही उत्पन्न करता है
आप अपनी machine पर एक अलग value देखेंगे
मैं 006 और 007 के लिए फिल्ड खाली छोड दूंगी
अब 008 fixedlength data elements general information पर click करें
koha स्वत: ही इस value को उत्पन्न करता है
मैं इस demo के लिए बाकी fields को छोड़ दूंगी
आप अपनी library की आवश्यकता के अनुसार इन fields को भरने पर विचार कर सकते हैं
इसके बाद 020 international standard book number टैब पर जाएँ
020 के समीप दो खाली boxes ढूंढ़े
ध्यान दें यदि आप question mark पर click करते हैं फिर संबंधित tag के लिए पूर्ण marc 21 bibliographic format खुलता है
यहाँ दोनों indicators अपरिभाषित हैं
तो मैं दो खाली boxes को ऐसे ही छोड़ दूंगी
field a international standard book number को देखें
अब यहां 13 अंकों की संख्या प्रविष्ट करें
आप यहां अपनी पुस्तक का isbn number प्रविष्ट कर सकते हैं
तो क्या होगा यदि एक से अधिक isbn number को जोड़ा जाना है
international standard book number के दाईं ओर repeat this tag button पर जाएँ
फिर इस पर click करें
दूसरे isbn number को जोड़ने के लिए एक duplicate field बनाया जाएगा
अब duplicate field में 10 अंकों वाली isbn संख्या प्रविष्ट करें मैं इसे प्रविष्ट करुँगी
आप अपनी पुस्तक का isbn प्रविष्ट कर सकते हैं
फिर 040 cataloging source टैब पर जाएँ
field c transcribing agency में लाल रंग का स्टार है
इसलिए इस field को भरना अनिवार्य है
यहाँ institute/university या department का name type करें
मैं iit bombay type करुँगी
tab 082 dewey decimal classification number टैब पर आएँ
field a classification number में 66062 प्रविष्ट करें
इसके बाद पेज के शीर्ष पर जाएँ और टैब 0 में 9 से टैब 1 पर click करें
खुले हुए नए पेज में 100 main entry personal name टैब पर जाएँ
100 question mark के निकट दो boxes को देखें
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है यदि आप question mark पर click करते हैं तो संबंधित tag के लिए पूर्ण marc 21 bibliographic format खुलता है
koha interface पर वापस जाएँ
अब पहले खाली box में 1 type करें
ध्यान दें 1 tag 100 का पहला सूचक है और यह field a के लिए surname प्रदर्शित करता है
2nd indicator marc 21 द्वारा अपरिभाषित है तो मैं इसे खाली छोड दूंगी
field a personal nameमें author का name प्रविष्ट करें
मैं patel arvind h type करुँगी
ध्यान दें कि: यदि आप पहला संकेतक मान 1 रखते हैं तो केवल उपनाम पहले आता है
इसलिए सूचक value उपनाम या मुख्यनाम के आधार पर प्रविष्ट की जाना चाहिए
इसके बाद शीर्ष पर जाएं और 0 से 9 में से टैब 2 पर click करें
फिर 245 title statement: टैब पर जाएँ
245 के समीप दो खाली boxes को देखें
पहले खाली box में 1 type करें ध्यान दें 1 added entry के लिए सूचक है
दूसरे खाली box में 0 type करें
दूसरा सूचक नॉनफिलिंग अक्षर दर्शाता है
मैंने 0 प्रविष्ट किया है जैसा कि इस title में है यहाँ कोई नॉनफिलिंग अक्षर नहीं है
field a टाइटल में industrial microbiology प्रविष्ट करें
field c statement of responsibility etc में arvind h patel type करें
फिर 250 edition statement टैब देखें
250 question mark के समीप दो काली boxes देखें
250 के लिए दोनों सूचक अनिर्धारित हैं तो मैं दो खाली बॉक्स को ऐसे ही छोड़ दूंगी
field a के लिए निम्नलिखित जानकारी भरें
edition statement में 12th ed प्रविष्ट करें
अब 260 publication distribution etc पर जाएँ
260 question mark के समीप दो खाली boxes देखें
इसके लिए दोनों सूचक अनिर्धारित हैं तो मैं दो खाली boxes को ऐसे ही छोड दूंगी
field a के लिए निम्नलिखित विवरणों को भरेंplace of publication distribution etc new delhi प्रविष्ट करें
field b में name of publisher distributor etc pearson प्रविष्ट करें
field c में date of publication distribution etc 2014 प्रविष्ट करें
अब शीर्ष पर वापस जाएं और टैब 0 से 9 में से टैब 3 पर क्लिक करें
अब 300 physical description पर जाएँ
300 के समीप दो खाली बॉक्सेस भरें
इसके लिए दोनों सूचक अनिर्धारित हैं तो मैं दो खाली बॉक्स ऐसे ही छोड दूंगी
सबफिल्ड a extent में निम्नलिखित विवरण भरें 960 pages प्रविष्ट करें
सबफिल्ड b other physical details में illustration प्रविष्ट करें
सबफिल्ड c dimensions में 25 cm प्रविष्ट करें
इसके बाद शीर्ष पर वापस जाएँ और टैब 0 से 9 में से 6 पर क्लिक करें
अब 650 subject added entrytopical term टैब पर जाएँ
650 प्रश्न चिह्न के समीप दो खाली बॉक्सेस देखें
पहले खाली बॉक्स में 1 टाइप करें
ध्यान दें 1 primary level of subject का सूचक है
दूसरे खाली box में 0 type करें
ध्यान दें 0 library of congress subject headings thesaurus का सूचक है
सबफिल्ड a topical term or geographic name entry element में सबजैक्ट की हैडिंग टाइप करें
मैं industrial microbiology टाइप करुँगी
यदि यहाँ एक से अधिक keyword को जोड़ना है जैसा कि पहले बताया गया है छोटे बटन repeat this tag पर क्लिक करें
एक डुप्लिकेट फ़िल्ड 650 खुलता है
पहले खाली बॉक्स में 2 टाइप करें
ध्यान दें कि 2 secondary level of subject का सूचक है
दूसरे खाली बॉक्स में 0 रहने दें जैसे यह है
ध्यान दें 0 library of congress subject headings thesaurus का सूचक है
सबफिल्ड a topical term or geographic name entry element में keyword के रूप में bacteria प्रविष्ट करें
अंत में ऊपर जाएँ टैब 0 से 9 में से टैब 9 पर क्लिक करें
टैग 942 added entry elements koha पर जाएँ
सबफिल्ड c: koha default item type में ड्रॉपडाउन से book चुनें
ध्यान दें कि यदि आप इस ट्यूटोरियल में पहले उल्लेख किए गए असाइनमेंट को पूरा कर चुके हैं तो ही आप ड्रॉप डाउन से book चुनने में सक्षम होंगे
सभी विवरण भरने के बाद पेज के कोने पर save पर क्लिक करें
items for industrial microbiology by patel arvind h शीर्षक के साथ नया पेज खुलता है
add item सेक्शन में यहाँ हमें विवरण भरने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है जैसे
source of acquisition
cost normal purchase price
barcode as accession number
और cost replacement price etc
तारीख को स्वत: चयन करने के लिए date acquired के लिए फ़िल्ड के अंदर क्लिक करें
हालांकि ध्यान दें कि तारीख को एडिट कर सकते हैं
मैंने अपनी library के अनुसार विवरण भर दिए हैं
आप वीडियो को रोक सकते हैं और विवरण अपनी library के अनुसार भर सकते हैं
यदि आपके पास किसी विशेष फ़िल्ड के लिए जानकारी नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें
याद रखें कि koha डिफ़ॉल्ट रूप से निम्न विवरण भरता है: permanent location
current location
full call number और koha item type
ध्यान दें कि यदि आवश्यक हो तो आप निम्न टैब पर क्लिक कर सकते हैं add & duplicate
add multiple copies of this item
सभी विवरण प्रविष्ट करने के बाद पेज के नीचे add item टैब पर क्लिक करें
items for industrial microbiology by patel arvind h शीर्षक के साथ नया पेज खुलता है
अब koha interface से लॉगआउट करें
ऐसा करने के लिए ऊपर दाएँ कोने पर जाएँ
spoken tutorial library पर क्लिक करें
ड्रॉपडाउन से log out चुनें
इसके साथ हम cataloging पूरा करते हैं
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने koha में cataloging के बारे में सीखा
नियतकार्य के रूप में serials के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाएँ
z3950 search का उपयोग करके catalogue रिकॉर्ड इम्पोर्ट करें
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाण पत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया समय के साथ अपने प्रश्नों को इस forum में post करें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
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद